सीसे में हमें एक जिम दिखाई दे रही है यहाँ पर हम बहोत सारी मसीने देख पा रहे हैं हमें यहाँ पर काले और पीले रंग के बलून भी दिखाई दे रहे हैं

कुछ हमें दीवार पर चिपके हुए नजर आ रहे हैं वहीं कुछ हमें जमीन पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हम बड़े बड़े सीसे भी देख पा रहे हैं

इस दरिक्षे में हमें एक पंडाल दिखाई दे रहा है जहां पर हम बहुत से लोगों के बैठने कि जगह देख प रहे हैं जमीन पर हमें हर रंग का कार्पट दिखाई दे रहा है काई सारे चैर भी यहां पर लगाए गएए हैं बहुत ही सुन्दर और रंग-बीरांग टेंटों से यहां पर साज सजावट कि गई है यह दृश्य अच्छा लग रहा है ।

यहां पर हम कुछ कपड़े टंगे हुए दे प रहे हैं वही मैदान में भी हमें कुछ लोग देखने को मिल रहे हैं देखने में यह दृश्य सुन्दर लगरहा हैं ।

दृश्य एक सलोन का दृश्य है यहां पर हमें कुछ लोग बाठी हुए दिखाई दे रहे हैं वही हमें इनका हजामत करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहां पर बड़े बड़ लगाया गए हैं उपेर से हमन रंग बी-रेंज बलन लगे हुए दिखे दे रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसा कि इसका उद्घाटन नया नया हुआ है ।

दरिक्षे में हामे दो हाथी दिखाई दे रहे हैं जिनमें हमें एक हाथी और एक हथनी नजर अ रही है वही हामे एक पास बारी बारी सूर दांत नजर अ रहे हैं देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पर हामे कुछ टूटे हुए पत्ते पौधे रखे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखा ऐसा लग रहा है यह नहीं खाने के लिए रखे गए हैं ।

छाई में हमने एक दुकान दिखाई दे रहही है जहा पर हम दुकांदेर को चैर पर बाथ हुया धक पराह है याहन पर हामे बोहउत सारे समान तंगी हुए दिखाई दे रही है या हा पर कुछ दबू में भी समा दख प रहा है बाहर हामे ठंडे कि बोतल भी रखे नजर आ रहा हैं ये दुकान अच्छा है ।

और कुछ चट्टान दिखाई दे रहे है साथ ही हम यहापर बड़े बड़े पेड़ भी देख पा रहे है आसपास हमे कुछ लोग भी यहाँ देखने को मिल रहे है यह जगह अच्छा है|